ऊपर पट्टी हैं एक ब्रिज हैं एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा हैं और एक खुला सा बड़ा आसमान हैं ।

एक औरत जा रही है उसमें बहोत सारी गाड़ियां पार्क करी है और बहोत सारी--